दुकान है यहां पर एगो गा उसकी दाढ़ी बना रहा है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है नीले कलर का कुछ ओढ़ रहा है।

यह एक बस स्टॉप है जहाँ पर एक लेडिस बैठी हुई उसके सथ एक बच्ची है और जेन्ट्स हैं जो चार-पाँच दिख रहें हैं और कुर्सियाँ उनपर बैठे हुए हैं लाइट दिख रही है नीचे जो पड़ी हुई है कुछ।

एक दुकान दिख रही है जो फूलों की है वहां पे जो दो-तीन जेंट्स दिख रहे है एक शर्ट पेंट पहना हुआ है दोनों ने बनियान सी पहन कर बैठे हुए है